ब्रश के ऊपर कुछ बहोत सारा समान भी है और एक ग्रिल सी भी लगी हुई हैं।

और ऑटो आ भी रहा है बिल्डिंग भी दिख रही है फ्लेक्स भी लगी है।

और एक नीचे देख रहा और दूसरा उसके सामने तरफ नीचे देख रहा--

येलो कलर के फ्लावर है और ग्रीन कलर की ट्रेन भी लगी हुई है।

और मटेरियल पड़े हैं और एक डिगी सी भी बनी है उसके आस पास घास ही उगा हुआ हैं।

और एक वाटर कूलर बड़ा है वाटर कूलर ब्लू कलर का है।

सिल्वर से कलर की और इस साइड बेसवी--

और ये देख लेडीज हाथ में फोन पकड़े खड़ी है और उधर दो बाइक भी हैं।

उसके पास में एक चेयर पड़ी है जिसका कलर ब्लैक है।

और काफी गिफ्ट के डब्बे भी नीचे पड़े हैं और एक गोल कलर का चक्कर सा भी पड़ा है।

और वायर भी हैं और बाहर से पेंट उतरा भी हुआ है अंदर एक लड़का भी खड़ा हैं और अंदर स्टेयर्स भी है।

व्हाइट और मौसम भी खराब है बादल भी हैं।

एक औरत ने साड़ी पहनी है शॉल ओढ़ा हुआ--

और इधर ये ब्लैक शर्ट में कोई खड़ा है वाइट गाड़ी है।

टोकरी में रखी है न्यूजपेपर लगा के और कईयों के तो गुच्छे से बने ऐसे खुले हैं।

जूस रियल जूस बढ़िया कॉफी कोई ऑरेंज कलर का--